इस तस्वीर पर बहुत सारे चाकू और अन्य धारदार सामान दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ बच्चों को खेलते हुए देख पा रहे है।

इमारत के आसपास की जमीन मिट्टी की है।

ये कोई बुद्ध धर्म का मंदिर है।

ये एक खुला मैदान है आदमियों की वीर लगी हुई है।

और आसमान पूरी तरह से नीला है।

और एक बहुत ही पुराना विद्यालय दिख रहा है।

कैफे के बाहर सात पुरुष है खड़े हैं।

दुकान का अंदर बहुत सारे कुर्सियों दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर पर एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है।

ऑटो के पास तीन व्यक्ति खड़े हैं।

प्रवेश द्वार के ऊपर एक साइन बोर्ड है जिस पर सुखडीओ पैलेस लिखा हुआ है।

जिसे छे हिस्सों में बांटा गया है और उन छे हिस्सों में --

सामने वाले बोर्ड पर सी_ई_ए_टी लिखा गया है और फ्यूल स्मार्ट टायर्स भी लिखा गया है।

इसका नाम स्टेशनरी शॉप है और इस मकान पर बच्चों के लिए सामान रखा गया है।

दुकान का नाम एम_एस गांव ट्रेडर्स है।

मौसम बादली और बारिश का संकेत दे रही है।

और ये स्थान बहोत ही शांत है।